लेकिन इधर पर हर एक चीज उपलब्ध है| कृपया आप इस मॉल से आकर अपनी किचिन की हर एक चीज खरीदें --

ये एक रेड़ी है जिस रेड़ी में एक आम पपीता और सेब केले सब लगे हुए हैं।

यह देखिगा यह एक पार्क है। यहाँ पर हर कोई अपनी आते हैं और यहाँ पर मनोरंजन करते हैं।

यहां पर ए बच्चे आते हैं और यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। ये स्टंप लगे हुए हैं जिससे आपको मालूम तो चल ही रहा होगा।

ऐसा लग रहा है जैसे की ये लोग डांस प्रतियोगिता मे अभी पार्टिसपेट करने जा रहे हैं।

इसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्ही की शक्तियों की वजह से ये सूरज नही इनकी एक शक्ति हो जिसकी वजह से इनका प्रतिबिम्ब नीचे समुन्द्र मे दिखाई दे रहा है। ये नाँव पे खड़े हुए हैं।

को डिस्टरबेंस पसंद नहीं है इसलिये अकेले में आए के बैठा हुआ है और जो अपने काम को बहुत ही अच्छे से करने में लगा हुआ है।